इस फोटो मे मुझे एक डस्टबीन दिखाई दे रही है।

इस फोटो में मुझे रेलवे स्टेशन दिखाई दे रहा है।

इस फोटो में मुझे बोहोत सारी बाइक दिखाई दे रही है।

इस फोटो में मुझे चश्मे की दुकान दिखाई दे रही है।

इस फोटो में मुझे बहुत बड़ा हॉल दिखाई दे रहा है।

इस फोटो में मुझे बहुत सारे ये फोटो दिखाई दे रही है।

इस फोटो में मुझे लाइटे दिखाई दे रहीं है।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

इस फोटो में मुझे हॉल दिखाई दे रहा हैं।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

इस फोटो में मुझे एक स्कूल दिखाई दे रहा है।

इस फोटो में मुझे दो गार्ड दिखाई दे रहें हैं।

इस फोटो में मुझे नल दिखाई दे रहा है।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

इस फोटो में मुझे खंबे दिखाई दे रहे--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

इस फोटो में मुझे फूलों की सजावटें दिखाई दे रही हैं।